getting ready for moodle installation पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम moodle को संस्थापित करने के लिए पूर्वपेक्षाओं के बारे में सीखेंगे
हम localhost पर packages check करना और database setup करना भी सीखेंगे
इस tutorial को record करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
xampp 5630 से प्राप्त apache mariadb और php और firefox web browser
आप अपनी पसंद का कोई भी web browser चुन सकते हैं
अपने system में moodle 33 संस्थापित करने के लिए आपके पास वह machine होनी चाहिए जो supports करे:
apache 2 x या उच्चतर version
यदि उपर्युक्त का आपके पास पुराना versions है तो आगे बढ़ने से पहले इनका संस्थापन रद्द कर दें
mariadb तेजी से उभरने वाला open source database है
यह mysql database का एक विकल्प है
web server distributions आपको apache mariadb और php को एक ही bundled में देता है
आप या तो इनको अलगअलग संस्थापित कर सकते हैं या web server distribution जैसे xampp wampp या lampp का उपयोग कर सकते हैं
मैंने मेरी machine पर xampp पहले से ही संस्थापित किया हुआ है
सबसे पहले हमें जाँचना चाहिए कि xampp हमारी machine पर चल रहा है
web browser में http colon double slash 127 dot 0 dot 0 dot 1 type करें और enter दबाएं
यह एक message unable to connect दर्शाता है
अर्थात xampp service नहीं चल रहा है
अतः हमें xampp service शुरू करना होगा
ctrl + alt + t कीज एक साथ दबाकर terminal खोलें
sudo space slash opt slash lampp slash lampp space start
prompted होने पर administrative password प्रविष्ट करें और enter दवाएं
यदि आपको यह message दिखता है
तो इसका अर्थ है कि xampp आपको system पर संस्थापित हो गया है आप service शुरू कर सकते हैं
कृपया ध्यान दें xampp 5630 mysql के बजाय mariadb का उपयोग करता है
commands और tools दोनों के लिए समान हैं
browser पर वापस जाएँ और पेज को refresh करें
अब हम xampp screen देख सकते हैं
आपको terminal में command not found एक message दिख सकता है
जिसका अर्थ है कि xampp आपकी machine पर संस्थापित नहीं हुआ है
यदि ऐसा है तो इस website पर php and mysql series में xampp installation tutorial देखें
उपर्युक्त tutorial में दिए गए निर्देशों का अनुकरण करें और xampp का नवीनतम version संस्थापित करें
terminal पर वापस जाएँ
अब xampp service को शुरू करने के लिए ऊपर दिखाए गए steps का अनुकरण करें
अपने system पर php के version की जाँच करें
terminal पर type करें sudo space slash opt slash lampp slash bin slash php space hyphen v और एंटर दबाएं
administrative password प्रविष्ट करें यदि prompted होता है और enter दबाएं
php का मेरा version 5630 है
यह message दर्शाता है कि php सफलतापूर्वर संस्थापित हो गया है
यदि 544 से कम का version है तो आपको xampp का नवीनतम version संस्थापित करना चाहिए
अब अपने system पर mariadb के version की जाँच करें
terminal पर type करें sudo space slash opt slash lampp slash bin slash mysql space hyphen v और एंटर दबाएं
administrative password प्रविष्ट करें यदि prompted होता है और enter दबाएं
mariadb का मेरा version 10121 है
यदि आपको 5530 से कम का version प्राप्त होता है तो आपको xampp का नवीनतम version संस्थापित करना चाहिए
कृपया ध्यान दें php और database के versions को जाँचने के लिए xampp रन होना चाहिए
यह भी ध्यान रखें कि command prompt अब बदल गया है
type करें backslash q और mariadb से बाहर आने के लिए enter दबाएं
यहाँ दिखाए गए अनुसार आपको दूसरी एरर मिल सकती है
आपको यह message मिल सकता है an apache daemon is already running
इसका अर्थ है कि startup script ने xamppapache शुरू नहीं किया है
यह दर्शाता है कि वहाँ कोई अन्य apache instance पहले से ही चल रहा है
xampp को सही तरह से शुरू करने के लिए आपको पहले इस daemon को रोकना होगा
apache को रोकने के लिए command है
आपको एक message mysql सकता है mysql daemon failed to start
इसका अर्थ है कि startup script ने mysql शुरू नहीं किया
यह दर्शाता है कि वहाँ कोई अन्य apache instance पहले से ही चल रहा है
xampp को सही तरह से शुरू करने के लिए आपको पहले इस daemon को रोकना होगा
mysql को रोकने के लिए command है: sudo space/etc/init d/mysql space stop
सभी एरर सही होती है और xampp सफलतापूर्वक रन होता है
फिर अपने web browser जाएं और पेज को refresh करें
यदि भाषा चयन के लिए prompted होता है तो englishचुनें
add हमें यूजर जोड़ने हैं और moodle के लिए database बनाना है
हम इसे phpmyadmin में करेंगे जो mariadb के लिए graphical यूजर interface है
यह xampp संस्थापन के साथ it है
browser पर वापस जाएं
xampp पेज पर ऊपर menu में phpmyadmin पर click करें
ऊपरी menu में user accounts पर click करें और फिर add user account पर click करें
जो नई window खुलती है उसमें अपनी पसंद का यूजरनेम प्रविष्ट करें
मैं मेरे यूजरनेम के रूप में moodle hyphen st प्रविष्ट करूँगा
host dropdown से local चुनें
password text box में अपने पसंद का password प्रविष्ट करें
मैं मेरे password के रूप में moodle hyphen st प्रविष्ट करूँगा
retype टेक्स्ट बॉक्स में समान password type करें
authentication plugin option ऐसे ही रहने दें
कृपया अभी के लिए generate password prompt पर click न करें
database for user account में हम option देख सकते हैं
create database with same name and grant all privileges
हम उस option को check करेंगे और इस पेज के नीचे दाएं पर go button पर click करें
आप window के ऊपरी भाग पर you have added a new user message देख सकते हैं
इसका अर्थ है कि moodlest name के साथ और moodlest यूजर के साथ एक नया database बनता है
username password और database names note कर दें
इनकी आवश्यकता moodle संस्थापन पूर्ण के लिए बाद में होगी
कृपया ध्यान दें database name और username name समान होने की आवश्यकता नहीं है
भिन्न names के लिए पहले database बनाएं और फिर database के लिए यूजर बनाएं
साथ ही naming कन्वेशन्स के आधार पर यूजरनेम में कोई भी spaces नहीं होना चाहिए
अब हमारे पास xampp कार्यरत और database तैयार है
अब हम moodle संस्थापित करने के लिए तैयार हैं
हम moodle का संस्थापन अगले tutorial में जारी रखेंगे
इसी के साथ हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं
संक्षेप में
इस tutorial में हमने सीखा:
moodle संस्थापित करने के लिए पूर्वापेक्षाओं के बारे में
पूर्वापेक्षाओं के लिए कैसे check करें
निम्नलिखित link पर मौजूद video spoken tutorial project को सारांशित करता है
कृपया इसे download करें और देखें
spoken tutorial project team कार्यशालाएँ आयोजित करती है और प्रमाणपत्र देती है
अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
क्या आपके पास इस spoken tutorial में प्रश्न हैं
कृपया इस साइट पर जाएँ
minute और second चुनें जहां आपके पास प्रश्न है
अपने प्रश्न को संक्षेप में बताएं हमारी team में से कोई उनका जवाब देगा
spoken tutorial forum इस tutorial के विशिष्ट प्रश्नों के लिए है
कृपया उन पर असंबंधित और सामान्य प्रश्न post न करें
यह अव्यवस्था को कम करने में मदद करेगा
कम अव्यवस्था के साथ हम इन चर्चाओं को निर्देशात्मक सामग्री के रूप में उपयोग कर सकते हैं
spoken tutorial project nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है
इस mission पर अधिक जानकारी दिखाई गई link पर उपलब्ध है
यह script विकास द्वारा अनुवादित है
मैं जया spoken tutorial team के साथ अब आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद